छोटा सा दीवार है दीवार के ऊपर एक बड़ा सा स्टार का पोस्टर लगा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक रेलवे स्टेशन है जिस पर बहोत सारी --

जहाँ पर बोहोत सारी गाडियाँ लगी हुईं हैं और दो चार लोग खड़े --

पेड़ के साइड से एक तिरंगा झंडा फहराया गया है और छोट --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

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक नदी है। नदी के दोनों किनारों पे --